इस दृश्य में एक दुकान दिखाई गई है जो की पेंट की दुकान है।

सड़क दिख रही है उस सुपर मार्केट के बाहर आलू प्याज और लहसुन रखा हुआ है।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

वहां पे छोटे छोटे गमले लगे हुए हैं जिसमें अलग अलग तरह के फूल और पौधे लगाए हुए हैं।

ढेर सारी पाया दिखाई दे रही है।